जहां पर बहोत अच्छी लाइटिंग हो रही--

यहां शरबत और कोल्ड ड्रिंक भी भारी मात्रा में दिखाई गई है।

यह सर्विस सेंटर जयपुर रोड पर स्थित है जो आर_बी_के होटल के एकदम सामने--

इस फोटो को देखने पर पता चल रहा है कि एक बड़ी सारी हवेली है।

तरह तरह की पेस्ट्री और केक देखने को मिलते हैं डेयरी मिल्क किट कैट भी यहां --

बहोत सारे सैट मिल रहे हैं।

यह फोटो एक मोहम्मडंस की मदरसे से ली गई है जहां पर --

इस ग्राउंड में बहोत ही सारे लड़के घोर मिलकर बैठे हैं।

यह फोटो एक सैलून है यहां पर एक लड़का आता है।